मनी ऑर्डर लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है।

सामने व्हाइट और रेड कलर का दिवाल दिख रहा है खिड़की बनी हुई है लोहे की।

छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं एक टीना दिखाई दे रहा है।

सामने व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जो बहोत सारी खिड़की बनी हुई है हरे रंग की।

सामने एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है पीले कलर के बोर्ड पे लाल रंग से लिटिल हर्ट रेस्टोरेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है बाहर एक फ्रीज दिखाई दे रही है।

ब्लैक कलर का दीवार नजर आ रहा है जिसमें दो पोस्टर लगा हुआ है।

कुछ लोग मच्छी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं लाल कलर का प्लेट दिखाई दे रहा है मच्छी लेने आए हुए हैं लोग साइकिल दिखाई दे रही है।

पत्थर का खंड बना हुआ है जिसके ऊपर वाटर आर_ओ लिखा हुआ नजर आ रहा है वाटर की मशीन दिखाई दे रही है।

टेबल नजर आ रहा है प पलंग बिछा हुआ है एक कुर्सी दिखाई दे रही है भूरे रंग की।

बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक लड़की दिखाई दे रही है अंदर जाते हुए।

सामने लाल कलर के बोर्ड में हेयर स्टाइल दुल्हन वाली फीलिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है।

वाइट कलर का टेबल नज़र आ रा है कांच का दो लोग दिखाई दे रहे है बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहा है वाइट कलर का --

येलो कलर का पिलर बना हुआ है जमीन में बहोत सारे लोग चटाई बिछाकर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें मोर रायपुर रमन का बस डिपो लिखा हुआ नजर आ रहा है।

खाते हुए दिखाई दे रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है।